सामने एक ट्रेक्टर खड़ा हुआ है जो नीले और सफ़ेद रंग है जिसपे काला साइलेंसर लगा हुआ है ।

पास में एक लकड़ी की अ बाउंड्री बनी हुए है जो लाल रंग की है जिसके पास में एक गमले लगे हुए हैं अंदर पेड़ है |

गैलेरी में साइकिल और बाइक खड़ी है।

ये एक नदी का किनारा है नदी का जो बहाव है वो की कम है और इसका स्तर बहुत ऊपर है नदी का रंग जो है वो हरा है ।

इसके पास में एक बोर्ड लगा हुआ है जो ल्यूमिनस का है।

यहाँ पे बल्ब भी लगे हुए है जो पीले रंग के है यहाँ पे तराजू भी रखा हुआ है।

जिसके पास में एक केबिन बना हुआ है।

जिसके पीछे शीशा र लगा हुआ है शीशे के अंदर मोहर रखी हुई हैं।

जिसपे दो लड़के खड़े हुए हैं एक ने बैग टँगा हु --

सामने एक रोड दिख रही है।